बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जो बहुत सारी लाईटो से सजा हुआ है और ब्राउन कलर के खंभे भी दिखाई दे रहे है नीचे येल्लो कलर की कुर्सी टेबल भी लगी दिखाई दे रही है।

यहाँ ब्लैक अन व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहुत सारे बालकनीयां दिखाई दे रही है और पीछे बहुत सारे खिड़किया दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रही है जो ब्लैक अन व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे है।

पेड़ पे थोडा ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है एक मकान भी दिखाई दे रहा है उस पर भी एक भगवा झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान भी रंगीन दिखाई दे रहा--

और एक सरस्वती जी की तस्वीर भी रखी दिखाई दे रही है एक घंटी रखी हुई दिखाई दे रही है ऊपर् बहुत सारे फूल अलग अलग कलर के लगे हुए दिखाई दे रहे है नीचे टाइल्स लगी दिखाई दे रही है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी लाइटें छोटी छोटी लगी हुई है और कुछ बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है अंदर बहुत सारी चेयरे रखी दिखाई--

एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे बहुत सारे गाड़ी कारें चलती दिखाई दे रही है और बहुत सारे मकान भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउन्ड में बहुत सारी स्कूटी रखी दिखाई दे रही है और एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है और नीचे बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे है और नीचे भी बहुत सारी बाइके खड़ी--